वह उसका ढक्कन खुला हुआ है तथा एक आदमी उसको रिपेयर करते हुए दिखाई दे रहा है वहाँ पे हमें बहुत से अलग-अलग तरह के टायर भी पड़े दिखाई दे रहें हैं जो कि एस.यु.वी. में लगे हैं वहाँ पर आदमी काम कर --

यह इमेज में हमें एक परेड होती हुई दिख रही है जो कि बाहर की है तथा वहाँ पे हमें बहुत से लोग ढोलक बजाते हुए नजर आ रहे --

यह इमेज में हमें बहुत बड़ी बिल्डिंग दिख रही है जो की एच.डी.एफ.सी. बैंक की नजर आ रही है वहाँ पे हमें एच.डी.एफ.सी. ए.टी.एम. भी दिख रहा है।

तथा नीचे हमे एक नीले कलर के बैनर में एस.बी.आई. बैंक लिखा दिख रहा है वहां पे हमें बहुत से लोगों खड़े दिख रहे है वहां बहुत बड़ा प्रवेश द्वार भी बना हुआ है।

दो बिल्डिंग के ऊपर हमें अलग अलग तरह की कलाकृतियाँ दिख रही है | वहाँ पर हमें जनरल किराना स्टोर की दुकान भी दिखाई दे रही है जो की बहुत बड़ी नजर आ रही है।